साइड में मैं एक खिड़की को देख पा रही हूं।

इस चित्र में मुझे एक गुमटी दिखाई दे रही है।

यहां पे मैं रेलवे की इमारत देख पा रही हूं।

गी रेलवे की पटरीयो को मैं देख बा रही हूं।

इस चित्र में मैं कुछ टेबल और कुर्सियों को देख पा रही हूं जिस पे कुछ लोग बैठे हुए है।

जहां पे कुछ लोग बैडमिंटल खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं।

आगे के गेट पे ऊपर एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है जिसपे भूपेश गुप्त महाविद्यालय लिखा हुआ है।